और क्या बोलते हैं उधर का पेड़- पौधा बहोत अच्छा लग रहा है उधर का घर भी अच्छा लग रहा है सब कुछ अच्छा है।

पानी बहुत अच्छा है इसमे का छोटा- छोटा पौधा भी है अच्छा है हरा -हरा--

ये कुछ खाने का जगह रेस्टोरेंट है क्या है अच्छा है उधर का ओ पार्क देखो ओ वाला बहोत अच्छा दिख रहा है ओ वाला बिल्डिंग है क्या है केस क्या पेड़ है।

यह बाबा भीमराव अंबेडकर है और बुद्ध हैं और ये किसकी मूर्ति है मुझे नहीं मालूम --

ये बिल्डिंग बहुत ही अच्छा है इसका कलर कितना अच्छा है चर्च है शायद बिल्डिंग नहीं है चर्च है क्या चर्च है यीशु का चर्च है फिर क्या है मेरे को नहीं मालूम इसके पीछे में और भी कुछ बड़ा सा बिल्डिंग है ।

देखो विभाजन को तीन कलर में दे दिया है अच्छा लग रहा है मेरे को।